हम बहुत सारे दरख्त और पौधे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सड़क के सामने भी दो-तीन दरख्त दिखाई दे रहे हैं और इसमें करील नमा जो चीज लगी हुई।

बहुत ही तरह के पौधे मुख्तलिफ तरह के पौधे लगे हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर झालियों गमले पे यहां झाड़ियां लगाई हुईं हैं।

और साथ में कुछ नागरिक में मौजूद है।

ये एक अमारत के सामने के मुनाजिर है जहां पर--